और इसके बीच मे एक बटन रोज़ है यानि गुलाब का छोटा सा फूल पड़ा हुआ है कितना अच्छा कलर है देखिए पीला कलर यह भगवान को शादियों मे सब--

इस तस्वीर मे आप देख सकते है बहुत सारे पत्थर है यहाँ पे और बीच बीच मे पानी है यह पानी बहता बहता यह पत्थर भी ऊपर डूब जाएंगे।

किला जैसा बनाया गया है ये पुरानी इमारत है इटावा तो कैसे यहाँ पे कोई रुक सकता है क्या --

यहाँ आप देख सकते है यह बहुत सुंदर- सा प्यार -सा बेडरूम है डबल बेड कोट है यहाँ पे देखिए व्हाइट पिल्लो है प्रिंटेड पिल्लो है छोटा पिल्लो हैं।

तस्वीर मे आप देख सकते है की ये मील हैं परीषिता बोध --

पेंस पेंसिल इरसेर आ स्केल वगेरा सारे बुक्स के स्टोर के आयटम यहाँ पे है ये नया दुकान है दिखरा शायद।

इस तस्वीर मे आप देख सकते हो बड़ा सा पुल यानि ब्रिज है ऊपर नीचे बड़ी सी नदी है पानी की बहुत सारे पत्थर भी है पानी के अंदर।